है जोकि पानी ए आर_ओ पानी के पास खड़ा हुआ है।

चार डेग रखे हुए हैं जिसमें कुछ न कुछ रखा हुआ है दो--

यह मुझे कोई क्लिनिक लग रही--

सीमेंट के इसके आगे का गेट जो है ग्लास का है।

यह कोई एक लकड़ी का बनाया हुआ रूम है।

एक पोस्टर एक कार का पोस्टर लगा हुआ है।

यह किसी चीज की यह टेडी बियर --

डिब्बे में करके भी बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

ये कोई एक वाटर पार्क है जिहकी जिसके ऊपर अंब्रेला रखे हुए है।

बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे--

एक साथ एंड एक आदमी अलग बैठा हुआ है एंड लाइट्स लगी हुई हैं।